थाली सिल्वर कलर की है नीचे फर्श भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें श्री राम राजा पैथोलॉजी लैब सेंटर नमक शाप दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक घर नजर आ रहा है जो सरकारी दफ्तर है।

ये बिल्डिंग के पीछे का दृश्य है बिल्डिंग पीले कलर की खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम झांसी का नजारा दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें सब्जी मंडी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जो की एक व्यक्ति अपने हाथो में चाय लेकर फोटो ले रहा है।

इस तस्वीर में हमें एल_जी नामक शॉप का दृश्य दिखाई दे रहा है।

काफी कुछ काले कलर में और ऊपर बोर्ड जो लगा है वो लाल कलर में है।

इस तस्वीर में हमें एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह जंगल के गेट का नजारा है जहां से जंगल में एंट्री होती है।

इस तस्वीर में हमें सुपर इंजीनियरिंग वर्कर्स का शॉप दिखाई दे रहा है जहां पे इंजीनियरिंग होती है।

नीचे एक पुजारी खड़ा हुआ है जो भगवे कलर का वस्त्र पहना है और ऊपर गोल्डन कलर की टेंट लगाई गई है।

यह सर्विस का दृश्य नीले कलर में है और आसमाने सफेद कलर में है।

इस दुकान में साड़ी के काफी बॉक्सेज कपबोर्ड में रखे हुए हैं।

यह तस्वीर में हमें एक लड़की काम करते हुए नजर आ रही है।

इस फोटो में हमें एक कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

नीचे काफी औरत और पुरुष खड़े हैं काफी भीड़ है दुकाने भी दिखाई दे रही है।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

नीचे एक गैस सिलेंडर और एक पोस्टर भी लिखा दिखाई दे रहा है।

यह एक बस ट्रक है जो कि नया नया लिया गया है इस पर काफी फूल लगे हुए हैं।